यहा पर हम्म बहुत प्यारी लाइट लगी हुई है और सामने एक काउंटर बना हुआ है जिस पर भी कुछ कपड़े हँग की हुए है इसकी दीवारों पर बहुत प्यारी पेंटिंग बनी हुई है।

यहा पर आप लोग देख सकते है। सामने की तरफ ये एक बहुत बडा पेट्रोलपंप बना हुआ है। जिसमे की काफी सारी गड़िया आती जाती दिखाई दे रही है।

यहा पर एक बहुत बड़ा आयना लगा हुआ है और सामने की तरफ बहुत सारे केवीनेट मे रे मेकअप से रिलेटिव प्रॉडक्ट रखे हुए है।

य लाइन्स से जमी हुई है इनके पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की मे से उजाला दिखाई दे रहा है।

जैसा की आप देख सकते है यहा पर एक कार बहुत ज्यादा बेकार कंडीसन में खड़ी हुई है जिसका अप सामने का बोनट भी नही है।